एगो पहाड़ बाटे अरियल का पेड़ बा उपरा बादल लउकता।

तीन गो तार बाटे पानी बाटे होदे एगो ए पाहड़ --

पाथलवा चोक वाटे ए दे घसियां मस्त बा पनियाँ मस्त बा खूबे मस्त लाग ताटे ।